बहुत अच्छा लग रहा है ये पेट्रोल पंप उम् लाइट उइट सब लगा हुआ है | यहाँ पर गाड़ी ढोलक सब पेट्रोल डीजल सब डलाया जाता है | बहुत क्यूट लग रहा है हमको ये पेट्रोल पंप ।